जो सामने एक तस्वीरों में दिख रही है।

ये नव-निर्माण बिल्डिंग है इसमें कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और एक इंजिनियर साहब सिविल इंजिनियर जो हाथ में लिए हुए क बता रहे है कि कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है उनके हाथों में कुछ पेपर जैसा दिख रहा है और चश्मे लगाय हुए है |

यह तस्वीरें चर्च की है और चर्च में कुछ समारोह हो रहा है और फादर लोग बैठे हुए हैं और उसके पीछे कुछ लड़के-लडकियाँ खड़े हैं और उसके पीछे इसु मसीह की फोटो टंगी हुई है जिसमें उन्हें लटकाया गया है।